मुझे इस कमरे के अंदर होटल भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बगीचा दिखाई दे रहा है।

जो लांदन का कपड़ा पैदा होय हुआ है।

इसमें डॉक्टर और कई सारे इंसान है।

तस्वीर में इंसान भी है।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

दुकान के ऊपर फैन भी लगाए हुए हैं।

इस कमरे का फ्लोर के कलर ब्राउन है।

तस्वीर में मुझे एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।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

कई सारे भेड़ भी हैं।

जोकि डार्क ब्लू और हला हरा ब्लू है।

दुकान के ऊपर एम_एम ऑप्टिकल लिखा हुए है।

मुझे एक घर भी दिखाई दे रहा है।

और उधर का दिवाल ब्लू कलर की हो।

के सामने एक प्लाई बोर्ड भी है।

कंप्यूटर के ऊपर स्विच बॉक्स भी लगाए हुए है।

मुझे इस तस्वीर में एक कमरे दिखाई दे रहा है।

के पीछे कई सारे पेड़ है।

दुकान में एक पोस्टर भी लगाया हुआ है।

तस्वीर के बाई तरफ एक लड़का भी खड़ा हुआ है जो की माक्स पहन के हैं।

तस्वीर के ऊपर फैन भी है और लाइट भी है।

जिसमें कपड़े और जूता रखे गए हैं।

चेयर का रंग ब्राउन है।

उसके सामने कई सारे इंसान भी बैठे हैं।

मुझे इस तस्वीर में स्टेज बनाते हुए इंसान दिखाई दे रहा--

इसके नीचे दो चप्पल दिखाई दे रहा है जिसके काला रंग कलर के है।

इसका रंग काला और सफेद से बनाए हुए हैं।

कमरे के ऊपर शीट और समान है।

जहां बहोत सारे मनुष्य भी है।